और बाहर स्ट्रक्चर बने हुए हैं और उसके ऊपर गुम्मट है एक जो सांप की पूंछ की तरह बनी हुई है और इसपर मछलियों का आकर भी बना हुआ है | निचे एक गाड़ी आई सफ़ेद रंग की है यहाँ पर पत्थर का रोड है |

यह एक मेडिकल की शॉप है यहाँ पर बहुत सारी दवाई रखी हुई हैं एक कैलेंडर टंगा हुआ है।

ये एक कोर्ट का नजारा है जहाँ पर ये दीवार बहुत पुरानी है और ये खत चुकी हैं यहाँ पर एक खम्भा लगा हुआ है | इस पर बहुत सारी बिजली के तार गए हुए हैं कुछ काले हैं कुछ सफ़ेद हैं और यहाँ पे वो --

सारे पेड़ लगे हुए हैं जो लम्बे हैं और उनके पत्तियों का रंग हरा है यह बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं |

बिल्डिंग का कलर सफेद हैऔर ऊपर परदे का कलर लाल है इसमें एक शीटर दी गयी है जिसका कलर नीला है और बगल में एक टीन का टपरा भी बना हुआ है जिसका कलर सफेद है यहाँ पर गार्डन भी है जिसका कलर हरा है।

इ यहाँ एक बहोत बड़ा ग्राउंड है जो इस पर हरि घास है और बगल में मकान बने हुए हैं और जो अभी बन रहें हैं और बगल में उनके टपररिया भी हैं।

उसपर जय बजरंगबली लिखा हुआ है निचे एक रोड है जो मॉल का रोड है बगल में पेड़ भी हैं उसपर हरे पत्तियों का रंग है |

ये एक तीन मंजिल का मकान है | निचे बहुत सारी सटर दी गई है | कोई सटरो में मेडिकल है |

ये एक मकान बना हुआ है जो दो मंजिल का है। यहाँ पर बहुत सारा समान रखा हुआ है। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की दुकान हैं किसी पर केले मिल रहें हैं किसी पर प्लास्टिक की चीज मिल रही हैं।

काँच की ड्रॉअर में पैक है और ऊपर ट्यूबलाइट लटकी है जो पीले कलर की रोशनी दे रही है |

और नीचे एक उनके चरणों की ओर एक मोर है और नीचे एक मिट्टी का बहुत बड़ा स्तंभ है पीछे बहुत सारी फोटो लगी हुई हैं।

सामने एक घना पेड़ लगा हुआ है जिसकी पत्तियां का रंग हरा है और यहां पर बड़े-बड़े पत्थर पड़े हु --